इस tutorial में हम सीखेंगे: static variables क्या हैं
static variables बनाना और static variables कैसे उपयोग करना है
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं ubuntu ऊबंटु 1204 jdk 17 और eclipse 431
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको java और eclipse ide का बुनियादी ज्ञान होना चहिए
आपको java में classes objects और instance variables का ज्ञान भी होना चाहिए
यदि नहीं है तो संबंधित java tutorials के लिए कृपया प्रदर्शित link पर जाएँ
static variable एक variable है जो पूर्ण class के साथ जु़डा हुआ है
इसे class variable भी कहते हैं
इसे static कीवर्ड का उपयोग करके घोषित किया जाता है
हमने पहले tutorial में static variable के बारे में संक्षेप में देखा है
इस tutorial में हम इसे विस्तार से देखेंगे
अब हम eclipse पर जाएंगे और staticvariabledemo नामक project बनाएँगे
इस project में हम static variables के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक classes बनायेंगे
अत: src folder पर rightclick करें और new> class पर click करें और class का name studentenroll type करें और enter दबाएँ
उदाहरण के साथ static variables के उपयोग के बारे में देखते हैं
किसी संगठन में छात्र नामांकन student enrollments प्रदर्शित करने के लिए बनाई गए class पर विचार करें
इस class में नामांकित छात्रों के name id branch और total count शामिल हैं
देखते हैं कि जब छात्र नामांकन पूरा होता है तो क्या होता है
default रूप से total count 0 है पहले छात्र का नामadil है
id it101 है और branch it है
अब total count 1 अपडेट किया गया है
इसीतरह जब दूसरा छात्र amal नामांकन करता है तो total count में 2 अपडेट हो जाता है
जब तीसरा छात्र carol नामांकन करता है तो total count में 3 अपडेट हो जाता है
अब हम पहचान सकते हैं कि वैरिएबलtotal count सभी objects के लिए समान है और single value है
अत: variable total count को static variable के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है
name यह भी देख सकते हैं कि प्रत्येक object के लिए variables name id और branch की अपनी copies है
इसके अलावा उनके प्रत्येक object के लिए विशिष्ट values हैं
इन variables को instance variables के रूप में माना जा सकता है
अब student enrollment class को दर्शाने वाले code को देखें
instance variables id name और branch के रूप में घोषित हैं
variable count static के रूप में घोषित है क्योंकि यह पूरे class के लिए समान है
जब class loaded है तो static variable एक single fixed memory में स्थित होता है
जबकि प्रत्येकobject का instance variables भिन्न memory पर स्थित होता है
अब source> पर click करें औरgenerate constructor using fields चुनें
बने हुए code से super कीवर्ड डिलीट करें
यह constructor id name और branch fields की values इनीशिलाइज कर सकता है
प्रत्येक बार एक object बनाया जाता है तो हमें variable count की value में वृद्धि करने की जरूरत है
अत: constructor में type करें: count ++ semicolon
add हम सभी variables की values print करने के लिए इस class में showdata मैथड जोडेंगे
अत: type करें public void showdata brackets में id name branch और छात्र नामांकन की कुल संख्या को print करने के लिए निम्न code type करें
अब default package पर rightclick करें और new> class पर click करें और फिर demo name type करें
इस class में हमारे पास main मैथड होगा
अत: type करें main और फिर main मैथड बनाने के लिए एक साथ ctrl + space दबाएँ
अब हमें student enrollment data print करने की आवश्यकता है
छात्र नामांकन प्रदर्शित करने के लिए हम studentenroll class में कुछ objects बनायेंगे
अत: निम्न code type करें: studentenroll s1 equals new studentenroll
अब हम भिन्न arguments की values pass कर सकते हैं
brackets में type करें it101 id के लिए adil name के लिए और it branch के लिए
अब नामांकन विवरण को print करने के लिए showdata मैथड लागू करते हैं
अत: type करें s1 showdata आब demo program now करें
हम देख सकते हैं कि s1 से संबंधित instance variables की values printed होती हैं
यह भी ध्यान दें कि छात्र नामांकन की संख्या की value 1 है
यह इसलिए क्योंकि हमने केवल एक object बनाया है
अब और object s2 बनाने के लिए निम्न code type करें
showdata मैथड को एक बार फिर से s2 का उपयोग करके कॉल किया जा सकता है
फिर से demo program run करें
हम देख सकते हैं कि s2 से संबंधित instance variables की values printed होती हैं
यह भी ध्यान दें कि छात्र नामांकन की सख्या की value s1 और s2 दोनों के लिए अपडेट है
अब एक और object s3 बनाते हैं
अब फिर से s3 का उपयोग करके showdata मैथड लागू करते हैं
फिर से demo program run करें
हम देख सकते हैं कि s3 से संबंधित instance variables की values printed होती हैं
यह भी ध्यान दें कि सभी मामलों में छात्रों के नामांकन की संख्या की value अब 3 में अपडेट कर दी गई है
अब हम समझ सकते हैं कि छात्र नामांकन की संख्या की value सभी objects के लिए समान है
slides पर वापस आएँ
static modifier का उपयोग final modifier के साथ भी किया जाता है
यह constant को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो पूर्ण class के लिए समान है
परंपरागत रूप से ऐसे constant variables के अक्षर अपरकेस में हैं
अब eclipse पर वापस आएँ
studentenroll class खोलें और public static final string org _ name = iitb; के रूप में variable declaration type करें
उदाहरण के रूप में यदि सभी छात्र एक ही सगंठन iitb से नामांकित किये जा रहे हैं
इसे constant static variable org _ name का उपोयग करके प्रदर्शित किया जा सकता है
यदि name एक से अधिक शब्द से बना है तो शब्दों को underscore से अलग किया जाता है
आमतौर पर हम इस प्रकार के constants को public दृश्यता के साथ घोषित करते हैं
अब demo class पर जाएँ और निम्न code type करें
यहाँ आप देख सकते हैं कि org _ name को इसके class name studentenroll का उपयोग करके accessed किया गया है
अब फिर से demo program now करें
हम देख सकते हैं कि organisation का name iitb के रूप में printed हो रहा है
सक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा:
static variable क्या है और कब इसे उपयोग किया जाता है
static variable कैसे बनाना और लागू करना है
नियतcar के रूप में एक car service station को प्रदर्शित करने के लिए एक class carservice तैयार करें
इस class में निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करने के लिए variables होने चाहिए
car make model और register number जो कि car service में हैं
no of cars in service के लिए
instance variables और static variables ज्ञात करें
उपयुक्त कीवर्ड का उपयोग करके उन्हें घोषित करें
car make model और register number की values इनीशिलाइज करने के लिए constructor परिभाषित करें
सभी variables की values print करने के लिए show मैथड परिभाषित करें
इसके साथ ही परिणामों को सत्यापित करने के लिए main मैथड वाली demo class बनाएँ अर्थातcarservice के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएँ
इनobjects का उपयोग करके show मैथड लागू करें
इसके अलावा सीधे ही class name का उपयोग करके static variables access करें
निम्न link पर the गए video में spoken tutorial project का सारांश है कृपया download करें और देखें
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है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
spoken tutorial प्रोजेक्टnmeict mhrd भारत सरकार द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह script विकास द्वारा अनुवादित है
iit bombay से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद